एक बिल्डिंग है और जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है और ये बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइन की गई है और ये इसका एम्ब्रॉयडरी का जो काम है वो व्हाइट -व्हाइट कलर का है और--

पहाड़ी इलाका है जो कि आधी ग्रीनरी है और आधी मिट्टी मिट्टी जैसी है इसमें बहुत बड़े-बड़े पत्थरे भी है जो कि--

गिर रही है ऊपर से और छोटे भी हैं और नीचे भी जो रास्ता है वो भी थोड़े जादे खराब है क्युकी वो मिट्टी के बने हुए हैं। और पत्थर भी है और यहां पे कोई ग्रीनरी नही दिखाई दे रही है और यहा पे कोई लोग भी नही दिखाई दे रहे --

और सामने एक बैठने का घर दिखाई दे रहा है जहां पे लोग बैठ सकते है आराम कर सकते है ये रास्ता थोड़ी सी खराब है और ये थोड़ी सी मिट्टी की है और थोड़ी सी ग्रीन रास्ता बन चुकी है और यहाँ पे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है।